और लड़के यहां पे येलो टी शर्ट पहने हुए हैं आस पास जंगल है।

यहां पे एक सुई है तार है और--

सामने घर है यहां पे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं बगल में एक बड़ा पेड़ है।

यहां पे गाय भैंस घूम रही हैं आसमान में बादल हैं।

और सामने स्टेयर्स बने हुए हैं सामने जाली है रेलिंग बना है चारों तरफ।

वाइ ब्लैक कलर का एल्बेस्टर है यहां पे एक यहां पे बना हुआ है बहोत सारे वायर्स है।

दो चेयर हैं ब्लैक कलर की ऑरेंज डब्बे हैं व्हाइट दीवार है।

वो यहां पे स फल खरीद रहे एक दुकानदार है।